बीच के रैक में फूलझड़ी के पैकेट रखे हैं बहोत सारे जिसमें अनार दाने और फूलझड़ी है।

इस तस्वीर में पेड़ पोधे लगे हैं हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है।

बंद है ऊपर दो झरोखा दिखाई दे रही है और एक--

बहुत बड़ा बिल्डिंग है इसके नीचे वाले हिस्से में यूनियन बैंक --